यहां पर फुगो से सजावट की गई है टेबल पर फ्लावर पॉट रखे हुए हैं।

मस्जिद में एक घड़ी लगी हुई है सफेद कलर की। एक घड़ी ऑरेंज कलर की।

टेबल पर तीन कुर्सी रखी हुई हैं और उसके टेबल पे प्लेटें रखी हुई हैं और एक फ्लॉवर पॉट रखा हुआ है।